यह एक पथरीली पहाड़ है जहां पास एक छोटी सी गुफा बनी हुई है।

यहां पास एक बड़ी सी स्टोर बना हुआ है।

जोकि पहली एंट्री जो गेट हैं तो गुब्बारे से सजा हुआ है।

बड़ा चट्टान दिख रहा है जहां पर पानी का झरना भी बना हुआ है।

और दुकान भी लगी हुई है राजश्री गुटखा की--

यहां पास कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं ग्रीन ही ग्रीन ।

ग्रीन जो बहोत ही प्यारा लग रहा है कांच के गेट भी लगे हुए हैं।

पुष्पी भंडार लिखा हुआ है और कार भी--

ट्रेन भी जा रही है मालगाड़ी की डब्बा है।

और यहां पास रेड कलर का प्लास्टिक टब और ग्रीन कलर का प्लास्टिक टब रखा हुआ है।

दो तीन मानव खड़े हुए हैं एक मानव के हाथ पलस्तर से बंधा हुआ है।